एक बच्चे ने पीले रंग का टी-शर्ट पैंट पहना हुआ है और ये बहोत ही खूबसूरत लग रहा है दृश्य देखने मे --